सामने की तरफ कुछ व्यक्ति अन्दर जाते नजर आ रहे हैंसाइड में एक व्यक्ति का हाथ दिख रहा है।

इस चित्र मे घने जंगल दिखाई दे रहा है हरी-हरी पत्तियां दिल को बहुत मन को बहुत सुकून दे रही है एक साथ करीब-करीब यहां पर जंगल को घना कर --

इस चित्र में आदर्श इंडिया टेक्निकल एंड पारामेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है इसका गेट लाल रंग का है पीछे की तरफ हरा पेड़ दिख रहा है जो बहुत सुंदर लग रहा--

इ चित्र एक कुकर की कुकर और बर्तनो की दुकान का दिखाई दे रहा है सामने एक काउंटर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है नीचे बोहत सारे छोटे-बड़े --

ये चित्र वेणी वैशाली कॉन्फरेंस हॉल का दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ पीले टाइल्स दिख रहे है ऊपर लाल --